एक ने गमला उठाया हुआ है उनका गमला का कलर है व्हाइट ।

उसके एक कोने पर पूरे शीशे का वॉल है।

यह तस्वीर लिया गया है गवर्नमेंट रेजिडेंस स्कूल के कंपाउंड के बाहर से जहां से हमें स्कूल नजर आ रहा है।

कई लोग बैठे हैं तो कई लोग खड़े हैं।

यहां ढेर सारे बच्चे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं।

यहां लड़कों ने पीले और लाल रंग का पोशाक लगाया हुआ है।

कई सारे फूल पौधे लगाए हुए हैं।

यह तस्वीर लिया गया है किसी प्रोग्राम से।

यहां के गेट के कलर हमें काला नजर आ रहा है जिनमें एक ताला भी लगा हुआ है।

साइड पर एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है जिनमें ढेर सारे पौधे हैं।

यहां चार लोग भी हमें दिख पा रहे हैं।

यह तस्वीर लिया गया है एक होटल से जिनका वॉल पुरे नीले कलर से रंगा हुआ है।

ऊपर लाइट्स भी नजर आ रहे हैं लाइट्स के रंग हमें पीले नजर आ रहे हैं।

ऊपर आसमान है आसमान का रंग काला है।

ये तस्वीर लिया गया है किसी कैफे शॉप से।

तस्वीर लिया गया है किसी फैक्ट्री के बाहर से जिसका बिल्डिंग बहोत ही लंबा है।

यहां में ढ़ेर सारे लोग नजर आ रहे हैं।